हॉस्पिटल है इसमें एक दो तीन चार पाच छे आदमी है।

फाइल रखी हुई है इन्होंने मास्क पहना हुआ है पीछे--

बोट लगी हुई है उसमें आदमी है।

पानी के बोतल से पानी पी रहे हैं जिसमे बहोत सारी लाइटे लगी हुई हैं।

स्टेज के ऊपर आदमी खड़े हैं। ऊपर बहोत सारी लोहे की कुछ रॉड्स लगी हुई है।

बाकी गेट बना हुआ है साथ में दो फूड्स रखे हुए है।

साइड में सोफा है सोफा के साथ में चेयर है।

टेबल रखा हुआ है। उसके नीचे एक और कारपेट है साइड में प्रेस करने के लिए भी --

ये एक तीन मन मंज़िल की बिल्डिंग है।

और एक टेबल है टेबल के ऊपर कुछ समान रखा हुआ है साइड में रेड कलर के कुछ बॉक्सेज है।

ये एक कपड़ो की शॉप है इसमें पांच छह डम्मी पीस लगे हुए है।

इसमें गाड़िया दो तीन पार्क है ऐसा एक अंकल जैसे है साइड में ग्रीन कलर की छत है थोड़ी सी जगी हुई।

इसमें चार पांच आदमी हैं।